लड़की भी हुए हैं और इसके प्लस ये भी फूलों का बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है।

ऊपर एक छोटे से बैनर पे एच_डी_एफ_सी बैंक भी लिखा हुआ है और साइड में इसके एक गेट भी है जो कि बंद है।

एक बहोत बड़ा पेड़ भी देखा जा सकता है और सड़क पे बोहोत सारे ऑटो रिक्शें भी देखे जा सकते हैं।

आगे एक इस फुटपाथ के आगे एक गेट भी दिख रहा है।

इसके साइड में दो टैंकर जैसे हैं और एक छोटी गाड़ी है जिसको कावर किया हुआ है।

बहोत सारे बच्चे भी है और कुछ लड़के जैसे की फोटो के लिए पोज दे रहे हो।